और इसमें यहाँ पर झूला भी है बैठने का भी जगह है और यहाँ पर बहोत ज अच्छे-अच्छे हरियाली भी है और यहाँ पर बहोत बड़े पेड़-पौधे हैं।

ये एक पेंटिंग है जहां पर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए गए हैं।

और ये रेड कलर में और ऊपर में कलश रखा गया है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।